ऐक्सिस बैंक है।

हरियाली बनाए रखना चाहिए।

ये कच्चा फूल का दुकान है।

वो सभी चीजे जो है यहाँ से प्रोपर --

यहाँ पे कुछ गारियाँ का स्टॉपेज भी --